पेट्रोल पंप है और एस_बी_आई बैंक दिख रही है।

यहां एक सड़क के किनारे।

कुछ लोग मिठाइयां खरीद रहे हैं।

यह एक महा देव कम प्यू टर रिपेयरिंग की --

है जहां गार्डन के साइड मे सड़क बनी हुई --

यहां सामने कुछ बॉक्स दिख रहे --

दिख रहा है और सामने रोड पे कुछ लोग खड़े हैं।